मजदूर लोहा लगाने का काम करते हुए दिखाई दे रहें हैं।

इस चित्र में एक भवन नजर आ रहा है जो कि बैंक का है।

तथा इसमें कुछ लोग चढ़ते और उतरते नजर आ रहे हैं।

तथा इन पटरियों के नीचे तालाब नजर आ रहा है।

इस चित्र में एक मंदिर नजर आ रहा है जहां पर महात्मा बुद्ध की मूर्ति रखी हुई है।

इस चित्र में महात्मा बुद्ध की लेठी हुई मूर्ति रखी नजर आ रही है जो के पीले रंग के वस्त्र से ढकी हुई है तथा आस-पास कांच का --

जिसमें महात्मा बुद्ध की मूर्तियां रखी हुई नजर आ रही हैं। तथा नीचे पूजा की समग्री रखी हुई दिख रही है।

इस चित्र में भगवन बुद्ध का एक मंदिर नजर आ रहा है।